यह स्कुल में टेंथ तक की पढाई होती --

इस गैरेज में गाड़ी को ठीक करता है। यहाँ पे बहुत सारे --

यह एक कॉलेज है। कॉलेज के बाहर एक औरत यहाँ पे झाड़ू लगा रही है।

यह एक रेस्टोरेंट है।

यहाँ पे लोग नहाने के लिए तलाब में आये हुए हैं।

फूल प्रसादी चढ़ा के --

यहाँ पे खराब गाड़ी को ठीक करने के लिए गैरेज में लाये जाते हैं।

हम लोग यहाँ पे भरवाने के लिए आये हुए हैं।